जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर लगे हुए है पीले कलर के फ्लावर ऊपर गमले टंगे हुए हैं ।

ऊपर पुल बना हुआ दिखाई दे रहा है नि--

बहुत सारे गमले हरे पीले नीले बहुत सारे गमले है ऊपर बादल दिखाई दे रहा है ।

पीछे बा उप पेंट दिखाई दे रहे हैं ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं।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

यहाँ पे हम एक दुकान देख रहे हैं जिसमें कि बहुत सारे कप --

बगीचे में फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर के फूल रेड कलर के फूल।

आसपास बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रहें हैं रोड ।

सारे खम्भे लगे हुएं हैं नीचे घास लगी हुईं दिखाई दे रहीं हैं।